बेल लगी हुई है यहां यहां का फर्निचर ब्लैक कलर का है ।

ब्लू कलर की यहां पर एक फिश पॉन्ड है ।

एक आदमी है जिन्होंने ब्लू गर्ल की--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

ये यहां पर एक जाल का गेट लगा हुआ--

यहां पर एक रेड कलर की चेयर रखी हुई है यहां पर एक आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहन रखा है ।

यहां पर कुछ लग रही है ।

यहां पर काफी सारे फूल जमीन पर पड़े हुए हैं।

यहां पर इन कुछ कपड़े की शॉप है ।

यहां पर कुछ टायर रखे हुए हैं यहां पर कुछ--

यहां पर काफी सारी लाइट चल रही है अंदर काफी सारी ज्वेलरी रखी हुई है ।